कोई सामने में एक लाल रंग का गुलाब भी दिख रहा है।

बहुत सारे पत्थर भी है और पेड़ के पत्ते का रंग हरा है।

और उसके पीछे भारत के झंडा भी है और दीवार का रंग भी सफेद है।

और उसकी छत के लिए टीना भी है और बहोत सारे लोहे और मशीने भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक हरा रंग का लंबा सा दुकान दिख --

ये और कुछ टेबल और कुर्सियां भी है।

तस्वीर में मुझे एक रूम दिख रहा है और कुछ टेबल और कुर्सियां भी हैं।

में मुझे एक बड़ा सा दिख रहा है।

के अंदर बहुत सारे सामाने भी है।

और उसके ऊपर में लीलाबाड़ी का पोस्टर लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे मनुष्य दिख रहा है।

और सामने में नहालगन पुलिस स्टेशन भी है।